खेत है बड़ा सारा हरियाली है हरे-भरे पेड़-पौधे हैं बड़े-बड़े से पेड़ हैं घर हैं मिट्टी है पत्थर हैं आसमान है एक औरत है।

गाड़ी हे साइकिल हे बाइक हे।

सिटीकार्ट लिखा है एक दो तीन चार पांच छै लिखा है ऊपर मे पंखे है।

बहुत बड़ी इमारतें हैं रोड है गत्ते हैं खिड़कियां हैं दरवाजे हैं।

पहाड़ हें घांसे हें मिट्टी हे पौधे हें बड़े-बड़े पेड़ हें घर हें सुखी डाकाले हें खंबा हे।

तार हें झोपड़ी हे घर हे मिट्टी हे।

एक दुकान हैं एक आदमी है टोपी लगाए हैं फोन पे बात कर रहे हैं एक और आदमी है मास्क लगाए जैकेट पहने।

कांच का समान है तराजू है जग है शटर है।